और यहां पे यहाँ पे हर तरीके की माला और भी बिक रही है यहां एक ठो लड़की खड़ी है जो ये माला बेच रही है।

यहां पे गुलाब की माला है और गेंदे की माला है और दोनों मिलाके मिली हुई माल है और व्हाइट माला भी है।

लेकिन यहां पे कोई भी और नहीं दिखाई दे रहा।

और यहां दो बाइक खड़ी है एक बाइक पे एक लड़का बैठा हुआ है पिंक शर्ट की ड्रेस पहन रखी है उसके पास एक मॉल भी है।

यह एक फल फ्रूट की शॉप है यहां पे सब्जी और भी मिलती हैं।

यह एक पी_सी_बी राजस्थान लिखा हुआ एक बोर्ड लगा हुआ है यह एक स्कूल है यहां पे ऑल हेल्पलाइन नंबर भी लिखे हुए हैं।

और दहेज का सामान रखा हुआ है यह सोफे रखे हुए हैं और चेयर रखी हुई है यहाँ अलमारी और सब चीजे रखी हुई हैं।

और यहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है पास में और एक बहोत ही सुंदर घर की तरह डिजाइन किया हुआ लग रहा है।

दे रहे हैं समान खरीद रहे हैं और यहां पे बहोत सारे और मॉल भी हैं।

और यहां पे ब्लैक कलर के और ये--

यह किसी रेस्टोरेंट का सीन है यहां पे बहोत सुंदर डिजाइन की दीवारें बना रखी है पेंटिंग कर रखी है।

लड़कियां जो रेस्टोरेंट में नाच रही है और यह बहुत ही प्यारी लग रही है नीचे जींस ऊपर लाल वेयर और --

लोग यहां पे अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आते हैं यहां पे गेट भी लगा हुआ है और एक आदमी भी बैठा है अंदर कूलर भी चल रहा --

बाहर कार भी खड़ी है कार पे नंबर भी लिख रखे हैं दो पास में स्कूटी भी रखी हुई है और मोटरसाइकिल भी रखी हुई --

औरतें जिन्होंने अपने सर पे टोकरी ले रखी है उन्होंने रेड कलर की घाघरे सी पहन रखी है।